और पीछे टीना का गेट है बहोत सारा बल्लू रखा हुआ है और एक साइकिल भी है।

यहां एक लंबी रोड गई है जिसके

सामने बहोत बड़ा पहाड़ है जिस पहाड़ से पानी का झरना बह रहा है।

यह एक स्कूल का ग्राउंड है जहां स्कूल के टीचर्स दो टीमों को खिला रहे है कबड्डी एक टीम ने पीली टी शर्ट पहनी है और एक ने नीली।

यह एक पार्क का दृश्य है जहां बहोत खूबसूरत नजारा है।